यहां पर ये जो नजारा दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई है लगी हुई है शायद कुछ यहां पर कार्यक्रम होने वाला है बहोत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है।